इस पिक्चर में मुझे ये बहोत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है और इस ग्राउंड के सामने में बहुत सारा बिल्डिंग्स भी दिखाई दे रहे है शायद स्कूल या कोई ऑफिस होगा।

इस पार्क में भी दो आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहा है।

तीनों लड़की बच्चे हैं और उनके चेहरा भी ब्लर किया हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां में बहुत सारा सुंदर सुंदर से फ्लावर्स भी रखे हुए हैं।

घर के बाहर में सात औरतें साडी पहना हुआ खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

इस ग्राउंड में भी ढेर सारे घास जंगल बढ़ते हुए दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है जो कि इस अंधेरे में बहुत सारे कैंडल्स जला के वहां पे दिखाई दे रहे हैं और सामने में भी दो कैंडल्स जलाया हुआ है दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में मुझे एक स्कूल दिखाई दे रहे है इस स्कूल के बाहर में ढेर सारे दो ग्रुप बाटे हुए दिखाई दे रहे हैं एक सफेद रंग है एक येलो रंग है।